नारियल पानी और तरह-तरह के फल रखे हुए हैं। इस दुकान पर एक दुकानदार भी मौजूद है और यहां पर पेटीएम भी रखा हुआ है जिससे हम पेटीएम भी कर सकते हैं।

इस तस्वीर में हम कुछ छात्राओं को देख सकते हैं जिसमें वो रंगोली बनाती हुई नज़र आ रही हैं।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर एक डांस स्टेज लगायी गयी है और इस स्टेज पे बोहोत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है।

पेट्रोल पंप में हम अपने वाहनों में तेल डालते है जिससे हम यात्रा सुगमता से --

इस तस्वीर में हमें दो सोफा नज़र आ रहे हैं। पहला जो सोफा है वो खाकी रंग का है और दूसरा जो सोफा है वो सुरमई रंग का है।